आपको इसके अंदर जो हैं वो बहुत सारे डोर्स भी पड़े हुए दिख रहे होंगे ये लोहे का सामान है।

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये घास लगी हुई है पत्थर जमे हुए हैं।

आसमान देखिए कितना सुंदरसा लग रहा हैं हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं आपको।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

और काउंटर के ऊपर खड़े हुए हैं और एक ने व्हाइट शर्ट पहनी है ग्रे पहनी है ग्रीन पहनी हुई है।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

बा गाड़ी से लोग जा रहे हैं घर बना हुआ है जीप बीच में खड़ी हुई है।

ये जो आप चित्र देख रहे है ये एक मंदिर का है कितना खूबसूरत सा ये मंदिर है इसका डेकोरेशन देखिए इसकी कार्विंग देखिए आप यहां पे जो भगवान जी हैं वो कितने सारे --